और एक नाँव पे दो लोग बैठे हैं जिन्हों वो तस्वीर निकलवा रहे हैं।

इस हॉस्पिटल के आगे कलर की --

यहाँ जिम यहाँ बहुत बड़ा कमरा जैसा दिखाई पड़ रहा है।

और कुछ सामान रखा हुआ है झोलो में।

और उस तरफ स्लेप भी पड़ जोकि है बहुत सा --

और पीछे की तरफ कुछ डब्बे भी रक्खे हुएँ है पेटियां --

जो कुछ कागज ओगज थोड़े बहुत पड़े हुए हैं।

और इस तरफ कुछ पन्नियों मे कुछ कमले --

ये गुरुदवार लग रहा है। इस गुरुदवारे में दो भोपू बंधे हुए हैं।